यहाँ पर एक घर दिखाई दे रहा जिसमें से छोटा-सा दरवाजा दिखाई दे रहा है| यहाँ पर दो भालू दिखाई दे रहे हैं जो--

व्हाइट कलर और ग्रीन कलर से पेंट हुआ है यहां पर और नीचे में फूल पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े गेट --

यहाँ बस एक टेबुल लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हुईं हैं जो कि वाइट कलर के परदे से ढकी हुई हैं। यहाँ बस एक लाइट लगी हुई है एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यह बस एक आदमी खड़ा हुआ है जो की रेड कलर का जैकट लगाए हुए है ये जिन जैसा दिखाई दे रहा है यह पर सिक पोस्टर लगा हुआ है।

यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है| यहाँ पे घांस-फूस दिखाई दे रहे हैं पीछे में बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

वहां बस एक बोर्ड दिखाई दे रही है। यहाँ बस एक खिड़की भी है। वह दो चेयर भी रखी हुई है।

कुर्ती का कलर संतरा कलर है यहाँ पर एक टेबल भी रखा हुआ है बहुत सरे लोग है।

यहाँ पर दो-तीन ठो बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| यहाँ पर से एक खम्बा खड़ा हुआ है।